बड़ा हैं जहां पे काफ़ी सारे लोग आते हैं घुमने के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे अधिकारी होते हैं यहाँ पे--

जो की पढ़ते है और उन्है --

काफ़ी सारे लोग आते है क्रिकेट फुटबाल और भी बहोत प्रकार के खेल खेलने के लिए।

यह एक स्कुल हैं और यह स्कुल काफ़ी बड़ा हैं इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट आते हैं।

और किताब खरीदते हैं यहाँ पे बोहत ही सस्ते दामो पे किताबे मिलती है जिसके कारन यहाँ पे लोग--